इस पिक्चर में मुझे एक शॉप दिखाई दे रही है जिसमें काफी सारे कपडे टंगे हुए हैं। जिसमें मुझे ऊपर की तरफ पंखे दिखाई दे रहे हैं। पंखे ब्लैक कलर के हैं।

इस पिक्चर में मुझे एक मीनार दिखाई दे रही है।

यह स्किन कलर की जीन्स पहनी हुई है। उसने ब्लैक कलर के शूज़ पेहने हुए हैं। पीछे मुझे और भी लोग दिखाई दे रहे हैं। इसमें पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है अम्म मंदिर के ऊपर एक लाइट लगी हुई है जोकि ग्रीन कलर की है।

इसमें मुझे कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। सीढियाँ दिखाई दे रही हैं। इसमें मुझे एक लेडी दिखाई दे रही है जिसने ग्रीन कलर के कपडे पहने हैं।

सामने की तरफ मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।

बाहर मुझे तीन बाइक खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिनका कलर ब्लैक है।